यह एक छोटे से कमरे की तस्वीर है। जिसके सामने वाली दीवार गुलाबी कलर की है। वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है।

यह मोर अत्यंत सुन्दर लग रहा है और यह तस्वीर भी अत्यंत सुन्दर लग रही है।

यह एक बोहोत बहो सुंदर तस्वीर है और यहाँ पर लोग फेशियल भी करा रहे हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर आठ लोग हैं।

और यह बहुत ही ज्यादा जगह मै फैला हुआ है यह तस्वीर बहुत ही सुंदर है।

शीशे के ऊपर घास लगी हुई हैं। सामने एक वाटर कूलर रखा हुआ हैं। ऊपर गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर रखी हुई हैं।